हरे रंग के पौधे भी लगे हुए है सामने--

गुलाबी रंग का है।

इस झूले पर बहोत सारे लोग बैठे है और नीचे में बहोत सारे लोग खड़े हो के झूले को देख रहे है।

ये एक चर्च की तस्वीर है जहां एक महिला--

ये एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है यहाँ एक ग्रे कलर की स्कूटी खड़ी है।

दुकान पे एक नीले रंग के बोर्ड पे लिखा हुआ है करीम नगर डेरी --

इस कपड़े की दुकान का नाम सफ़ेद रंग से लिखा गया है प्लेनेट फैशन --

जितने भी बैंच है वो खाली है और इसमें एक हरे रंग की भी बैंच है।

कुछ खाली चेयर लगे हुए है खाली टेबल भी हैं।

ये एक अनुराधा कोचिंग क्लासेज की तस्वीर है।

यह होटल के बाहर एक आदमी और एक बच्चा खड़ा--

ग्राउंड पे कुछ लोग खड़े है जो कुछ सपथ ले रहै हैं।

और उसके बाद एक आदमी खड़ा है जिसने ऑरेंज रंग की शर्ट पहनी है और हरे रंग की टोपी लगाई है।